माता राजमानी देबी कन्या महाविद्यालय अंबिकापुर अरब हे यहाँ कॉलेज के पढ़ाई होथे।

काले गाड़ी साइकिल खड़ा है कार - उर भी खड़ा है काले पढ़ाई होवत हे कोई विज्ञान- उज्ञान का दिखत है --

और किस चीज की पढ़ाई होवत हो ही ये कॉलेज हवे बहुत सारा गाड़ी साईकिल मन खडा है।